इस फोटो में मुझे एक ढाबा दिखाई दे रही है जो कि ढाबा का नाम है।

जो की पहाड़ के ऊपर बड़े-बड़े पेड़-पौधे है और रेलवे ट्रैक है। ट्रैक पे एक ट्रेन है।

ट्रेन के नीचे बहोत बड़ी खाई है।

इस फोटो में मुझे एक टीने की छत दिखाई दे रही है।

जो की बिल्डिंग में बहुत बड़े बड़े विंडो है और घर में दो दरवाजा है और दोनों तरफ एक एक विंडो है।

दो आदमी बैठे हैं और एक आदमी खरा है।

टेबल पे टिशू पेपर और एक चम्मच भी है।

इस तस्वीर में मुझे रोड दिखाई दे रही है जो की रोड के बगल में एक झोपड़ी हैं।

पहाड़ पे बड़े बड़े पेड़ लगे हैं।

तीन बोट है और एक बोट के ऊपर एक आदमी रेड कलर की श--

और एक ब्लैंकेट नीचे गिरी है और कमरे में दो बिजली की बोर्ड हैं और पानी की बॉटल चार्जर --

समुंद्र अंदर में एक बोट है और बोट के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं।

जो की कंपनी का नाम है।

और फील्ड के चारों तरफ अंधेरा है और फील्ड में दो लाइटें जल रही है।